छोटे छोटे गमले भी लगाए गए हैं पानी के लिए पाइप लग

लकड़ी के फर्नीचर की इमेज लगी हुई है जिसमें बच्चे पढाई कर रहे हैं और ये एक सर हैं जो कि उन्हें गाइड करते हुए पढ़ा रहे हैं और ये एक --

लायन्स ब्रो के प्रचार के लिए बातचीत और लगाई गई हैं कि ये मतलब कस्टमर को पता रहे कि क्या चीज --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं जिसके अंदर एक स्टूडेंट पढ़ने वाला है आर_एस आर_पी_एस की तैयारी कर --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक स्टील की--

इस तस्वीर मैं देख पा रहा हूं ये एक पुराना कोई घर या महल है जिसमें अंदर पुराने दीवार है।

गरमा गरम जलेबी रखी हुई है जोकि देखने में बहुत ही स्वादिष्ट है इसकी चमक से ही पता चल रहा है कि ये इसकी मिठास जो है --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक रात का दृश्य है जहां कुछ मजदूर लोग भाई लोग जो कि मंडी या किसी फैक्टरी में माल लोड कर रहे हैं रात को।

जोकि एक फट्टा लगाया गया है लकड़ी का ट्रक खड़ा है ट्रक के अंदर दो भाई लोग जोकि लोडिंग कर रहे हैं।

जो की हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के आगे कई बाइक खड़ी हुई है और दो व्यक्ति बाहर की तरफ में खड़े हैं हॉस्पिटल के मेन गेट दरवाजे के आगे।

इस तस्वीर में मुझे प्लास्टिक वो प्लास्टिक की नल दिखाई दे रहे हैं जो कि एक अलग हार्डवेयर की दुकान हो सकती है जिसमें ग्रो --

इस तस्वीर मे मुझे ती चार लेडिस व्हाइट कलर के सेम ड्रेस पहन कर खड़ी हुई हैं जो की दिखाई दे रही हैं पीछे की तरफ में एक--

एक पीले रंग का क्वार्टर भी दिखाई दे रहा है और ये एक अलग ही प्रतिमा है।